तीन व्यक्ति काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ कंप्यूटर खाली हैं।

ढेर सारे गमले रखे हुए हैं।

एक बड़ी हॉल है।

कई लाइटें लगी हुई हैं।

सब बड़े बड़े वाहन लगे हुए हैं।

किनारे पे कुछ जंगली घास उगी हुई है।

ढेर सारी रंग बिरंगे बेसिंस हैं।

एक मेज पे बोतल रखी हुई है।

यह एक बस डिपो है।

एक झोले में हरे रंग की बोतल है।

कई पेड़ पौधे लगे हुवे हैं।

विद्यालय के सामने दो पेड़ लगे हुए हैं।

कुछ लोग वीडियो और तस्वीरें ले रहे हैं।

टेंट में रंग बिरंगे मटके लगे हुए हैं।

ये लोग बैठ के कार्यक्रम देख रहे--

दुकान में कई सारे फूल पत्ती रखे हुए हैं।

कई पेड़ लगे हुए हैं।

मंदिर के प्रांगण में कुछ लोग बैठे हुए हैं।

रस्सी पे कपड़े सूख रहे हैं।

हाल की दीवारें पीले रंग की है।

दुकान में एक दीवार पंखा लगा हुआ है।

कान के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

उस व्यक्ति ने सफेद रंग का शर्ट पहना हुआ है।

द्वार पे दो व्यक्ति खड़े है।

मे व्यक्तियों ने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई है।

ये जंगली घास जमीन पे उगी हुई है।

मंदिर में भगवान की मूर्ति रखी हुई है।

टाइल्स को प्लास्टिक से ढका गया है।

एक नीले रंग की टेंपू दिखाई दे रही है।

शोरूम के पिलर पे रंग बिरंगे गुब्बारे टंगे हुए हैं।

कई सारी लाइटें जल रही हैं।

एक सफेद रंग की मेज और तीन कुर्सी रखी हुई है।

में एक बड़ी जहाज है।

कई सारे पेड़ लगे हुए हैं।

अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए हैं।

एक कमरे की तस्वीर है।

रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए हैं।

एक लाल रंग के कपड़े पहने हुए औरत सड़क पे चलती दिखाई दे रही है।